फोटो में एक बड़ी सी थाली दिख रही है जहां पे चावल--

यह रैक बना हुआ है और कपड़े जो है सिस्टमैटिक रखे दिख रहे है।